यह एक बोहोत बड़ा बस स्टैंड प्रतीत हो ड़हा हैं जहां पे बोहोत साड़े --

या तो तोड़े गए हैं या फिर वेस्ट पिलर्स थे।

सामान को ऊपर ऊंचाइयों पे बहोत अच्छी तरीके से टांगा जा सके--

जिसमें शटर लगाया गया है यहां पे कुछ--

इसके पीछे एक छोटी सी नाव है जो--

हर बेड पे कुछ लोग आकर अपने परिजनों का हाल चाल पूछ रहे है यहां काफी साफ सफाई है।

यहां पे बहोत सारे बैलून टगाए गए हैं जिससे यह काफी--